कुछ लोग काम करते हुएं दिखाई दे रहें हैं।

जो ऑरेंज और सफेद रंग की है सफेद रंग के पोर्शन पर--

बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल रखी हुई है।

है हॉल को रिबन से और गुब्बारे से सजाया गया है।

इस चित्र में एक दुकान के अंदर बहोत सारे गुब्बारे और रिबिन लगाई गई है।

इस चित्र में बहुत सारे मटके रखे हुए हैं।

जो कि मिट्टी के बने हुए हैं मटके में नल भी लगे हुए हैं।

मिट्टी के बहोत सारे बर्तन भी रखे हैं।

दुकान के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है।

पानी बहते हुए में नहाते हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में कुछ लोग बैग टांग कर बाहर खड़े हुए हैं।

और कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

इस चित्र में कुछ लोग काम करते हुए दिख रहे हैं।

और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का फोटो भीं हैं।

और लाइट भी जल रही है।

दुकान का नाम एम_आर_एफ सेठिया टायर्स है।

हॉल में बहुत सारी टेबल कुर्सियां लगी हुई है।

यह चित्र एक कार्यक्रम का है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के अंदर और बाहर--

यह चित्र एक अस्पताल के आई_सी_यू का है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में कुछ लोग भी दिख रहे हैं।